रखी है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

और रंग बिरंगे फ्लावर्स नजर आ रहे हैं।

जहां पर सोफे लगे हैं ऊपर लाइटे जलती दिखाई दे रही है।

और पानी का कैंपर सामने रखा हुआ है यहां पर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा है दीवाल पर ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर कुछ बच्चे बेंच पर बैठे हुए दिख रहे है यह एक स्कूल नजर आ रही हैं।

और बच्चे ड्राइंग बनाते हुएं नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है।

जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं सामने इस्टेज नजर आ रहा है।

यहां पर लाइटें जल रही हैं और शो प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं।

एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पर ऊपर लाइट्से जल रही हैं और कुर्सी टेबल भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर--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

इस इमेज में सामने यहां पर रेती सीमेंट का ढेर दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ मजदूर --

इस इमेज में सामने यहां पर भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है जहां पर फूलों का डेकोरेशन नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है जहां पर पर्दे का डेकोरेशन है।

और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

एक आदमी बैठ के मछली बेच रहा है।

और कुछ लोग खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने ऑटो रिक्शा और गाड़ी चल रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर कार टेंपो ट्रक चल रहे है रोड पर और देखिएगा बिरला मंदिर भी --